उसके आगे बहुत सारे बोरिया रखी दिखाई दे रही हैं इन बोरियों के अंदर कुछ सामान रखा है।

जो की ईटे कि है और इस पर कोई पेंट नहीं है ।

इस लड़के ने स स्वेटर पहेन रखी है और टाई लगा रखा है।

एक दिवार दिख रही है दिवार टीन की है और ऊपर छत भी टीन की दिख रही है ।

अ दीवार मिट्टी की दीवार दिख रही है और दूसरी तरफ --

जिसमे से एक आदमी कुछ काटता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा आदमी कुछ साफ करता दिखाई दे रहा --